एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी --

और उसके ऊपर लाल रंग की पट्टी पर एल_जी लिखा हुआ है।

पूजा हो रही है यहां पर छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है।

यहां पर एक लड़की लाल रंग की ड्रेस में खड़ी हुई है।

यहां पर एक काले रंग का गेट बना हुआ है।

इसका नाम लिखा हुआ है वही बिल्डिंग के सामने एक व्यक्ति और दो बाइक --